चार व्यक्ति खड़े हुए हैं और महिला ये --

बड़ी संख्या मे भीड़ मे उपस्थित होकर घूम रहे है।

खड़ा हुआ हैउसमें भी बहुत सुन्दर वृक्ष उगे हुए हैं।

खड़ी हुई है वे उस पेड़ के ऊपर कुछ --